अ पलाजु उसपे जाने वाला है।

यह गाड़ी है ट्रेन औ वाला और यहाँ तीन ठो डब्बा है एक इंजन है।

घास धसरा हुआ है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर घर और खिड़की दिखाई दे रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है --